यह एक इलेक्ट्रॉनिक हॉल का दृश्य है जहां से इलेक्ट्रिक तारे जा रही हैं।

एक तरफ आइसक्रीम भी रखी हुई हैं पीछे की तरफ बहोत सारा खाने पीने का समान--

कुछ वेटर खड़े हुए हैं जिन्होंने सेम कपड़े पहने हैं।

वह ख खाना व नाश्ता बना रहे हैं।

यह एक क्लीनिक का दृश्य है क्लीनिक में कुछ--

जिस पर कुछ लड़कियां डांस कर रही है सबने अपने हाथ पकड़े--

और वह एक शेड दिखाई दे रहा है।